इस पिक में ‌एक युवक का हाथ में पासुएबड़ा वाला डंबल लेकर एक्सरसाइज कर रहा है और अपना चेस्ट आगे किए हुए--

जिम में एक्सरसाइज कर रहा है साथ में ट्रेनर भी है जो इसको सीखा रहा है।

बैकग्राउंड में बह बहोत सारे ट्री और गाड़ी दिखाई दे रहे हैं इसके सा-- बगल मे एक बहोत बड़ा गार्डन भी है।

ये इसके दो इसमें बेठ कर विध्यालय जाते हैं तथा विध्यालय से छुट्टी के टाइम घर भी आते हैं।

तथा यहां लोन भी दिया जाता है तथा हफ्ते हफ्ते टू हफ़्ते यहाँ से पैसा दिया जाता है ।

यह चर्च हैं जहा पर एक फदिरा की स्पीच दे रही तथा इस के बारे मे बता रही है। यहा बोहोत से बच्चे आते है।

यहाँ से फूल आर्डर किए जाते हैं यहाँ अच्छे से अच्छे फूल सस्ते दाम पे मिल जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं यहाँ के पुष्प ।